यहां पर अलग अलग तरह के बहोत सारे--

और यहां पर बाइक पे भी लोग दिखाई दे रहे है। ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहे है और गाड़ियां और --

सामने बहुत सारी कच्ची ईंटें दिखाई दे रही है।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

सामने एक सड़क दिखाई दे रही हैं।

बहोत सारे पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।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

आस पास बहुत सारी बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही है। यहां पर लाइटे भी दिखाई दे रही है।

काले रंग का गेट दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा समान बैग भी दिखाई दे रहा है।

ऑफिस में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

सामने शीशा भी दिखाई दे रहा है।